सूट पहनाया गया है लहंगा पहनाया गया है दुपट्टा भी लगाया गया है तमाम --

तीन दो पांच दो सात स्टैचू है सातों स्टैचू को कपड़े पहनाए गए हैं।

ये घर है घर के सामने घर के सामने एक गाड़ी है गाड़ी आगे से खुली हुई है काफी इसमें --

नहीं दिख रहा है उसका ड्राइवर का वो जगह ब्लैकनेस ज्यादा है।

ये सोनी इंटेक्स का बोर्ड लगा है वोल्टेज ये यहां पे इलेक्ट्रिक सामान वगैरह मिलते हैं।

बाद से लेके प्री स्कूलर जो भी है परचेस खरीदते जाते हैं।

काफी ज्यादा सामान भरा हुआ है गत्ते में भी सामान है और बाहर तक सामान रखा गया है।

प्लांट भी कुछ लगे हुए हैं और होटल में अंदर पर्दे भी लगे हुए हैं लाइट फोक्स ज्यादा है।

काफी देखने में सुंदर लग रहा है साफ सुथराजगह है।

पटरे वाली चौकी रखी गई है लकड़ी की और साइकिल भी है एक बाइक भी रख है यहां पे।

ये मॉल है मॉल में काफी दूर तक लंबा सा रेख है पार्ट वाइज करके--

तीन लाइन का तीनों लाइन में सामान पूरा भरा हुआ है कहीं स्पेस नहीं है।

ये फील्ड हैं फील्ड में गेट हैं स्टील का बाउंड्री लगा हुआ हैं।

वेल्स वाले खंभे खड़े हैं बीच में टेबल जैसे बनाया है इस पे नीले-नीले कुछ डब्बे रखे हैं दो साइड में--

वाइट कलर में डेकोरेट किया गया हैं खंबे को बहुत ही सुंदर जगह ल पैलेस लग रहा हैं।

ये मेडिकल स्टोर हैं बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर हैं दुकान--

दवाई वगैरह का कहीं स्पेस नहीं हैं एल मॉडल दोनों कॉर्नर भरा हुआ हैं ।

काफी सारी दवाइयाँ हैं लाइट वाइट भी जल रहा है साफ सुथरा जगह है और यहाँ पे --

टेबल ब्रेंच रखा है और कुर्सी रखा है और उसी की परछाहीं फील्ड में आई है आधा फील्ड ब्लैकनेस है परछा --

यह एच_डी_एफ_सी बैंक है बैंक में काफी सारा --

अ आगे भीन है बाइक खड़ी है लोग भी खड़े हैं बैंक में आसान तरीके से पैसे निकाले जाते हैं जमा किए जाते हैं।

ये इलेक्ट्रिक रूम है काफी सारा सामान रखा गया हैं किनारे किनारे --

डब्बे में दिख रहा है और रे रेक रेक पे भी भरा हुआ है सामान --

ये रोड के किनारे फूल प्लांट फ्लावर लगे हुए हैं काफी --

आठ ओठ के सजा उजा के रखा गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में --

गमला भी रखा गया हैबड़ा गमला है छोटा गमला है पाइपें लगी हैं पानी वानी के लिए बहुत ही सुंदर प्यारा --

ये अंधेरा है अंधेरे में ऊपर से पर्दा लटका हुआ है पीले कलर में गुंबज टाइप का --

यहाँ पे तीन चार बंदे खड़े हैं ऊपर टेबल पर कुछ रखा गया है।

और एक इधर टोपी पहन के नीले शर्ट में सामने पैजामा पहन के कुछ कर रहा है।

थोड़ा अंधेरा है साफ दिख नहीं रहा है खंबे लगे हुए हैं लोहे के पाइप लगे हुए हैं लोहा लकड़ का ज्यादा ही --

कार्टून का पेंटिंग लगा हुआ है पीले कलर का स्कूल है खिड़कियाँ दिख रही हैं गुलदस्ते पेड़ वगैरह लगे हुए हैं।

किनारे किनारे दोनों किनारे रेलिंग है बाउंड्री है।

ये स्नैक बार का बोर्ड लगा हुआ है आगे दो बंदे खड़े हैं एक फोन से बात कर रहा है एक खड़ा है।

काउंटर पे भी सामान रखा गया है पीछे नीले कलर का काउंटर खाली दिख रहा है।

और का दो लोग आपस दो लोग खड़े हैं एक फोन से बात कर रहे हैं मिया जी सफेद टोपी लगाए हुए हैं।

ये रोड पे बस है बस पे लोग एक लोग लगेज लेके चढ़ रहे हैं एक लो --

इरायल एनफील्ड का बोर्ड लगा हुआ है नीचे काफी सारा समान है दुकान है।

और आगे टायर वायर भी रखा गया है इस्टूल के पास यहाँ पे गाड़ी वगैरह का सामान परचेस में --

और गोल्डन कलर का उप पाई लगा हुआ --

यहाँ पे काफी सारा गड्ढा किया गया है मिट्टी निकाला गया है।

और एक बंदा खड़ा है दूर दूर घर दिख रहे हैं धुधला --

ये सामने बाउंड्री लगी हुई है बाउंड्री एक --

और ये मिट्टी का ढेर लगा हुआ है पास आगे स्पेस है दीवाल पे एक फूल पेंट किया --

ये गेट झालर लटकाया गया है काउंटर लगा हुआ है काउंटर के उधर --

जो मशीन बना है गोल सा उसमें उ गेंहू पड़ता है या कुछ भी ओ पीस के आटा बना देता है।

उनके पास थोड़ा सा लाइट दिख रहा है पेड़ पौधे हैं।

ये लोहे का नट है डंबल जैसे बड़ा बड़ा पाइप कशने उशने के काम आता है एल्वो --